और एक ग्राउन्ड दिख रहा है ग्राउन्ड में कुछ बाइक खड़ी हैं ग्राउन्ड के बगल में एक शोरूम दिख रहा है।

शोरूम के बाहर अमूल का बोर्ड लगा हुआ है ।

टेबल में चावल रखा हुआ है और कुछ सब्‍जी भी रखी हुई है टेबल के बगल में एक चेयर भी रखा हुआ है।

जो हरे-भरे से है ग्राउंड मे छोटी-छोटी घासें भी है ग्राउंड बहोत बड़ा सा दिख रहा है।

ये यह पहाड़ पर दिख रहे है पहाड़ बहुत ही ऊँचा दिखाई दे रहा है जिस पर बड़े-बड़े पेड़ भी है।

और बोहोत सारी मकान दिखाई दे रहे है एक मकान पर दु फ्लोर का एक पतला सा घर बना हुआ है।